अ मैदान में काफी कचरा भी है मैदान के साइड में जाल से घेरा गया है।

उनके पैर में अल्ता लगा हुआ हैं लाल कलर का और महिला नृत्य के मुद्रा में खड़ी है।

और ऊपर आसमान नीला दिखाई दे रहा है उजले बादल जो है से दिखाई दे रहे हैं।

और यह गेट लोहा का है अंदर मंदिर है काफी लाइटें जल रही है बहुत अच्छा है मंद--

रिसेप्शन हॉल के सामने एक गेट है।

इस रैक पे एक लैपटॉप रखा हुआ है।

और इस बिल्डिंग का ऊपर का कलर जो है वो--

फूलों से सजाया गया है सामने लाल कलर का एक पर्दा है।

जिसके आगे में कुछ बोतल रखी हुई है।